खम्बो का रंग लाल और उजाला है और इस फैक्ट्री में बहुत सारे लाइटें जल रही है और नीचे बहुत सारी पाइपें बिछी हुई है।

इस चित्र में बहुत सारे छोटे छोटे भवन है और उसके पिलर लगी हुई है बगल में एक रेलिंग है जिसके अंदर एक पीले कलर की साड़ी पहने हुई एक औरत है।

दीवार पे बोर्ड लगे हुए हैं बोर्ड का रंग व्हाइट है और बोर्ड पर पंखे लगे हुए हैं।

इसके नीचे हरे कलर का पर्दा लगा हुआ है और उसके अंदर एक टेबल है।

इ टेबुल के अंदर एक बैग एक पानी बोतल और एक हेल्मेट रखा हुआ है।

एक चित्र में एक होटल का बाहर का दृश्य है जहां पर बड़े अक्षरों में होटल पर ए_सी नॉन ए_सी रूम्स रेस्टोरेंट हॉट एंड चॉप्स नॉनवेज एवं वेज लिखा हुआ है।

यह चित्र एक बाइक के शोरूम का है यहां पर बहुत सारे बाइकें लगी हुई हैं।

इस दुकान में एक आदमी बैठा हुआ है और सामने व्हाइट कलर का काउंटर है।

इस दुकान में एक आदमी हैं जो ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ हैं।

उसके मोबाइल का रंग नीला है और उसने अपने हाथ पर एक अंगूठी पहनी हुई है।

उस रूम में दो आदमी जो टेबल पर बैठे हुए हैं और कंप्यूटर चला रहे हैं इस रूम में बहुत सारी कंप्यूटर रखी हुई है।

बाहर एक कार खड़ी है जिसका रंग हल्का ग्रे है और उसपे टायर है।

आगे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

ऊपर आसमान है आसमान का रंग नीला है।

इस चित्र में एक बिल्डिंग है जो अभी पूरी तरह से बन के कंप्लीट नहीं हुआ है।

इसके बाहर दो बाईकें लगी हुई हैं और उस मेडिकल स्टोर में लाइटें जल रही हैं और रैक पर बहुत सारी सामानें रखी हुई हैं।

इस दुकान में एक आदमी है बैठा हुआ है जिसने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

बगल में जमशेदपुर स्कूल लिखा हुआ है और स्कूल के बाहर बहुत सारे पेड़ एवं पौधे हैं।